उनके गोद में एक बच्चे है।

ये सहरसा के एक मशहूर स्‍कूल है जो कि पढ़ने में यहाँ विद्यार्थी बहुत ही आगे गया है इंडियन हाई स्कू --

ढेर सारे कस्टमर्स का रूझान है और इंडियन पोस्‍ट ऑफिस में न्‍यू न्‍यू जो अस्किम आते हैं इ --

प्रतीत हो रहा और रिलैक्स फील हो के पैसा निकालने का कोशिश कर रहे हैं।

ग्रील लगा हुआ है ग्रिल जो रेड --